इस ट्रे के अंदर लड्डू रखें हैं पेड़े रखें हैं।

बहुत सारी जिम की मशीन राखी हुई है उनमें साइकिलिंग की मशीन राखी हुई है।

दो तीन स्ट्रेचर रखें हैं।

और झरने के सामने एक चबूतरा बना हुआ है।

कोको की कुकीज़ की कुछ शीशियाँ राखी हुई हैं।

और इ-रिक्शा के बाजु में एक छोटा सा स्टूल रखा है।

इसमें एक बहुत बड़ा द्वार दिखाई दे रहा है।

मैदान दिखाई दे रहा है नीचे कच --

मैदान के बीच में कुछ जगह में पानी भरा दिख रहा है।

और उस दुकान में बहुत सारे बेग लटके हुए हैं।

और उस बस के पीछे बहुत बड़ा स हम्म गेट बना है |

यह लड़का बौटल से पानी पी रहा है।

इस दुकान पर फ़ोटो कॉपी लिखा हुआ है।